एक गोदाम है जिसमें सीमेंट के कट्टे रखे हुए दिख रहे हैं।

एक आदमी वैक्यूम क्लीनर से उसकी सफाई कर रहा है।

पंखे भी हैं हरे रंग की बाल्टी रखी हुई है टिन बिछी हुई दिख रही है।

एक बगीचा है जिसमें बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

कुछ सूखे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं मौसम साफ है।

रैक में सबसे नीचे तरबूज और पपीता रखे हुए हैं।

पी_वी_सी का कलर गोल्डन और क्रीम कलर है।

अपने अपने हाथों में जुटे और पैरों में जूते पहन रखे हैं।

सामने दीवार पर श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर का बोर्ड लगा है।

एक घर है जिस पर पीले रंग की पल्ली बिछी हुई है।